इसमें आदमी दिख रहे हैं। कूलर दिख रहा है।

इसमे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। आसमान दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ दिख रही हैं। पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इसमें कूलर दिख रहा है और डस्ट्बिन दिख रहा है आदमी दिख रहा है पेप्सी की टेरे --